रेड कलर का पेंट मारा हुआ है जो कि गेट के ऊपर फूल लगा हुआ है।

और दो बच्चे कपड़े पहने हुए हैं।

और बाइक भी है और साइकिल भी है जो ब्लू कलर का ग्रीन सा सीढ़ी है।

यह एक किराना दुकान का दृश्य है।

यहां पे बड़ा सा आर्मी कैंप है जो कि यहां पे चार आदमी ड्रेस पहने हुए आर्मी कैंप वाला आउ जो कि यहां पे टैम देख रहा है तीन ठे --

यहां पर बड़ा सा यूनिवर्सिटी कॉलेज है।

यहां पे चार बाइक लगी हुई है जो कि बगल में पोल भी है।

हरमोनिया दिख रहा है और गिटार दिख रहा है और यहां पे कीबोर्ड दिख रहा है।

एक गाड़ी साइड में लगा हुआ है।

दीवाल पर वाइट पेंट है जोकि दीवाल पर ये ब्ल्यू कलर का भी पेंट है।